jmol application में surfaces and orbitals के इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न करना सीखेंगे
alicyclic और aromatic अणुओं के models बनाना
अणुओं की भिन्न surfaces दिखाना
परमाण्विक और आणविक ऑर्बिटल्स दिखाना
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए कि jmol application में आणविक models को कैसे बनायें और edit करें
यदि नहीं तो सम्बंधित tutorials के लिए हमारी website पर जाएँ
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
ubuntu os version 1204
jmol version 1222 और
java jre version 7
मैंने एक नयी jmol application window खोली है
अब सबसे पहले cyclohexane का model बनाते हैं
modelkit menu पर click करें
panel पर methane का model दिखाई देता है
cyclohexane बनाने के लिए हमें छः carbon परमाणुओं की hydrocarbon chain बनानी है
हम model में hydrogen को methyl group से बदलेंगे
ऐसा करने के लिए हम hydrogen पर cursor रखेंगे और इस पर click करेंगे
screen पर यह इथेन का model है
यह step दो बार और दोहराएं और एक बार में एक hydrogen को methyl group से बदलें
hydrogens पर इस प्रकार click करें कि structure एक वृत्त बनाये
अब rotate molecule tool प्रयोग करके screen पर structure को घुमाएं
panel पर यह butane का structure है
modelkit menu पर click करें
chain के अंत में उपलब्ध किसी भी carbon परमाणु के hydrogen पर click करें
यह panel पर pentane का model है
hydrogens में से किसी एक पर click करें जो कि carbon chain के अंत के निकट है
panel पर cyclohexane का model बनाया गया है
structure को उपयुक्त बनाने के लिए modelkit menu में minimize विकल्प का प्रयोग करें
अब cyclohexane का model अपनी सर्वाधिक स्थिर चेयर कान्फॉर्मेशन में है
वैकल्पिक रूप से cyclic structures बनाने के लिए हम modelkit menu में drag to bond विकल्प भी प्रयोग कर सकते हैं
इस विशेषता को दर्शाने के लिए मैं pentane का model प्रयोग करुँगी
panel पर यह pentane का model है
इसको cyclopentane में बदलने के लिए modelkit menu से drag to bond विकल्प select करें
cursor को chain के एक सिरे पर उपलब्ध carbon पर रखते हैं
mouse button को पकड़ें
mouse button को बिना छोड़े cursor को chain के दूसरे सिरे पर उपलब्ध carbon तक लाएं
अब mouse button छोड़ दें
panel पर हमारे पास cyclopentane का model है
अब cyclohexane के model के साथ jmol panel पर वापस जाते हैं
अब cyclohexane को benzene ring में बदलते हैं
हमें cyclohexane ring में alternate पोज़ीशन पर double bonds लगाने हैं
modelkit menu खोलें
किन्हीं दो carbon परमाणुओं के बीच cursor रखें और उस पर click करें
अब हमारे पास panel पर cyclohexene है
आगे इसको benzene में बदलने के लिए हमें structure में दो और double bonds लगाने की ज़रूरत है
अगले दो alternate carbon परमाणुओं के बीच वाले bond पर click करें
panel पर हमारे पास benzene का model है
स्थिर कान्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए energy minimization करें
अणुओं की surface topology jmol application प्रयोग करके दिखाई जा सकती है
भिन्न surfaces देखने के लिए popअप menu खोलें
निश्चित कर लें कि modelkit menu बंद हो गया है अगर यह खुला हो
अब popअप menu खोलने के लिए panel पर right click करें
नीचे जाएँ और surfaces select करें
अनेक विकल्पों के साथ एक submenu खुलता है
dot surface
van der waals
और कुछ अन्य
प्रदर्शन के लिए मैं molecular surface select करुँगी
benzene का model molecular surface के साथ प्रदर्शित होता है
अब इसे एक अन्य surface माना dot surface में बदलते हैं
अतः popअप menu दोबारा खोलें और dot surface चुनें
हम surfaces को opaque अपारदर्शी या translucent भी बना सकते हैं
ऐसा करने के लिए popअप menu खोलें
surfaces तक नीचे जाएँ और make opaque विकल्प select चुनें
देखें कि benzene model opaque हो गया है
surface विकल्प को बंद करने के लिए popअप menu खोलें surfaces चुनें
off तक नीचे जाएँ और इस पर click करें
अब बिना किसी surfaces के हमारे पर benzene का model है
jmol अणुओं के आणविक और परमाण्विक ऑर्बिटल्स दर्शा सकता है
console पर commands लिख कर screen पर परमाण्विक ऑर्बिटल्स दिखाए जा सकते हैं
file और new पर क्लिक करके एक नयी jmol window खोलें
अब file और फिर console पर क्लिक करके console window खोलें
screen पर console window खुलती है
console window को magnifier करने के लिए मैं kmag screen magnifier प्रयोग कर रही हूँ
परमाण्विक ऑर्बिटल्स के लिए command line isosurface phase atomicorbital से शुरू होती है
$ dollar prompt पर type करें isosurface phase atomic orbital
यह क्वांटम numbers n l और m के बाद आता है जो प्रत्येक परमाण्विक orbital के लिए विशिष्ट होते हैं
s orbital को दर्शाने के लिए type करें 2 0 0
numbers 200 क्रमशः n l और m क्वांटम numbers को दर्शाते हैं
command को निष्पादित करने के लिए enter की दबाएं
हमारे पास panel पर s orbital प्रदर्शित हुआ है
यहाँ परमाणविक ऑर्बिटल्स और सम्बंधित script commands के कुछ और उदाहरण हैं
command line सभी परमाणविक ऑर्बिटल्स के लिए समान हैं
console पर पिछली command दिखाने के लिए keyboard पर अप arrow की दबाएं
क्वांटम numbers n l और m को edit कर 2 1 1 करें
enter की दबाएं और jmol panel पर px orbital देखें
अप arrow की दोबारा दबाएं और n l और m को edit कर 3 2 और1 करें
enter की दबाएं और jmol panel पर dxy orbital देखें
हम इन इमेजों को भिन्न file formats जैसे jpg png और pdf में भी सेव कर सकते हैं
यहाँ सारे परमाणविक ऑर्बिटल्स के लिए commands की एक सूची है s p d और f
इस slide पर दिखाए गए models परमाणविक ऑर्बिटल्स के हैं
ये console पर लिखे script commands की मदद से बनाये गए थे
यहाँ मैंने एक नया jmol panel और console खोला है यह दिखाने के लिए कि आणविक ऑर्बिटल्स को कैसे प्रदर्शित करते हैं
jmol प्रयोग करके hybridized आणविक ऑर्बिटल्स जैसे sp
हमारे पास पैनल पर मीथेन का मॉडल है
मीथेन sp
linear combination of atomic orbitals यानि lcao मेथड आणविक ऑर्बिटल्स बनाने के लिए प्रयोग होता है
अतः कमांड लाइन lcaocartoon के बाद create और ऑर्बिटल के नाम के साथ शुरू होती है
डॉलर प्रॉम्प्ट पर टाइप करें lcaocartoon create sp3
enter दबाएं
sp3 hybridized आणविक ऑर्बिटल्स के साथ मीथेन का मॉडल देखें
sp2 hybridized आणविक ऑर्बिटल्स को देखने के लिए हम उदाहरण में इथीन लेंगे
पैनल पर यह इथीन का अणु है
इथीन अणु तीन sp2 hybridized आणविक ऑर्बिटल रखता है उनके नाम sp2a sp2b और sp2c हैं
डॉलर प्रॉम्प्ट पर टाइप करें lcaocartoon create sp2a एंटर दबाएं
पैनल पर इथीन मॉडल पर sp2 ऑर्बिटल देखें
अप एरो की दबाएं और sp2a को sp2b से बदलें एंटर दबाएं
दोबारा अप एरो की दबाएं और sp2b को sp2c से बदलें एंटर दबाएं
अंततः pi bond के लिए ऑर्बिटल का नाम एडिट कर pz करें
पैनल पर सारे आणविक ऑर्बिटल्स के साथ हमारे पास इथीन अणु है
यह स्लाइड आणविक ऑर्बिटल्स के साथ कुछ अन्य अणुओं के उदाहरण दिखाती है
अधिक जानकारी के लिए jmol स्क्रिप्ट डॉक्युमेंटेशन की वेबसाइट देखें
इसको सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने निम्न करना सीखा
cyclohexane और cyclopentane के मॉडल बनाना
benzene का मॉडल बनाना
अणुओं की सरफेस टोपोलॉजी दिखाना
हमने निम्न भी सीखा
परमाणविक ऑर्बिटल्स s p d f दर्शाना
कॉन्सोल पर स्क्रिप्ट कमांड्स लिखकर आणविक ऑर्बिटल्स sp3 sp2 and sp दर्शाना
यहाँ एक नियत कार्य है
2butene का मॉडल बनायें और आणविक ऑर्बिटल्स दर्शाएं
आणविक ऑर्बिटल्स के रंग और साइज को बदलने के लिए lcaocartoon कमांड जाँचें
कमांड्स की सूची के लिए नीचे दिए गए लिंक देखें
इस url पर उपलब्ध video देखें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
अधिक जानकारी के कृपया contact @spokentutorial org को लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है